इ सुविधा आसानी से मिलता है।

सुनले एक सीजन में धान रोपाया जाता है।

पढ़ाई कर रहा है जल्द से खिलो--

ये कोई आँगन बाड़ी केंद्र है जिसमे सभी बच्चे लोग पढ़ते हैं छोटे-छोटे बच्चे या --